एक पक्का का घर बनाया हुआ है एक गाड़ी है गाड़ी पर बहुत सारे बॉक्स हैं चोंगा हैं।

पेड़ पौधे हैं रखा हुआ है।

ऊपर सबसे पीला कलर का लगाया हुआ है चार पांच भगवान के प्रतिमाएं लगाए हुए हैं।

एक दीदी को किताब दिखा रहे हैं उसमें उमा स्टूडियो फोटो लिखा है।

किताब की दुकान है इसमें ऊपर आरती बुक सेंटर लिखा है यहां पर बहुत सारे लोग हैं।

अंदर जाने का रास्ता है बहुत सारे बड़ा पेड़ पौधे हैं छोटा छोटा पेड़ पौधे हैं और बल्ब भीलगाए हुए हैं जो रात को जलते हैं।

बहुत सारे तार लगाए हुए है। ऊपर पीला कलर का कुछ है।

एक बड़ा सा ऑफिस है जो शीशा का बनाया हुआ है ऊपर से कर्कट चढ़ाया हुआ है।

कुछ लोग हैं पेड़ पौधे हैं।

दो जेन्स एक जेन्स है। एक लेडिस गला मे पहनी हुई है ब्लू कलर का साड़ी--

पिंक और व्हाइट कलर का बलून है रिबन लगाए हैं फूल से टेंपो में लगाया हुआ है।

एक बुक दुकान है एक भैया खड़े हैं वो पेन दिखा रहे हैं पेन के बहुत सारे डब्बा हैं।

बहुत सारा बुक है एक आदमी अह भैया है भैया के चेहरा पर ब्लर है हाथ में पेन पकड़े हुए है।

ब्लू और व्हाइट कलर का शर्ट पहने है।

बड़ा बड़ा पेड़ पौधा है एक के पौधा है।